सामने रोड जो है चल रहा है और बैंक को लोहे का दरवाजा लगा हुआ है एक साइड में कुछ पिक्चरें बनी हुई है।

जहां पे कुछ लोगों ने मैट बिछाये हुए है।

यहां एक मोबाइल क्रेन है और ट्रक और क्रेन का कलर ग्रीन है।

सामने एक लाल रंग का ड्रम पड़ा है और साइड पे एक टायर बड़ा नजर आ रहा है।

और दो इधर जो टायर वाले कुछ मशीन पाई है।

सामने चंद्रमा भी नजर रहा है और आसमान भी नीले रंग का दिखाई दे रहा है।

जहां पे एक ग्लास लगी हुई है और सभी के चेहरे कवर किए हुए हैं ऊपर काफी लाइट्स लगी हुई है।

और नीचे जो ब्राउन टाइल लगी हुई हैं।

और सामने वाली गाड़ी का कलर ग्रे है।

जे ये गाड़ी सर्विस स्टेशन पर खड़ी है।

और साइड पे एक रेड कलर का नीचे जो है।

जहां पे ये काफी ऊंची जगह बनी हुई है उसमें पत्थर लगे हुए हैं।

एक आदमी के बाल नज़र आ रहे है। काफी स्टूडेंट यहाँ बैठे हुए हैं।

उन्होंने अपने यहा पे कॉपी खोल रखी है एक लड़की का आगे फोन पड़ा हुआ है एक सामने पिंक शर्ट में आदमी खड़ा--

अभी भी पिंक कलर के बंधे हुए हैं।

उस पर कुछ लिखा हुआ है और इनमें रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए हैं।

सामने एक व्हाईट कलर की चलनी लगी हुई है।

जहां एक टेबल पड़ा है साथ में चेयर पड़ी हुई है।

एक सामने लेडिस खड़ी है और एक ने कान को फोन लगाया हुआ है।

दो तीन लेडीज़ पीछे खड़े हैं।